इस इमेज में एक लड़का उल्टा उम्म लेटा हुआ है उसके हाथ में दो-तीन अंगूठी है।

और उसके एक हाथ में एक वॉच है और सामने एक पीले रंग का पर्दा लगा हुआ है।

सामने कुछ लोग खड़े हुए है और कुछ हरी-घास भी लगी हुई है। ओ--

और एक आदमी अपन लाल रेड कलर की पेन से लिख रहा है।

इस इमेज में सामने एक ब्लैक रंग की गाड़ी खड़ी हुई है स --

और सामने एक वीवो का बोर्ड लगा

सामने एक सफेद रंग की बिल्डिंग भी दिखाई दे रही है।

सामने एक छाता रखा हुआ है और सामने एक ब बोर्ड पर बंधन बैंक भी लिखा हुआ है।

और एक राड भी लगी हुई है और एक आईना भी लगा हुआ है ऊपर एक पंखा भी लगा हुआ है।

इस इमेज में सामने बहोत सारे मोबाइल फोन के डिब्बे रखे हुए हैं।

और सामने विवो का बोर्ड भी लगा हुआ है नीचे --

उस पर केनरा बैंक भारत सरकार का उपकरण जालिम शाखा लिखा हुआ है।

और सामने एक च् चैनल गेट लगा हुआ है और एक स्टील की रेलिंग भी लगी हुई है।

सामने दो ब्रेनच रखी हुई हैं सा और ऊपर एक सफेद रंग का पंखा भी लगा हुआ है और --

इस इमेज में दो रेलवे लाइन दिख रही हैं।

वेलकम देवनाराण भी लिखा हुआ है।

और वाच पहने हुए है और बोहोत सारी पुस्तक रखी हुई हैं।

इस इमेज में बोहोत सारे लोग बैठे हुए हैं। बोहोत सारी नीले रंग की कुर्सी रखी हुई हैं।

और उनकी मूर्ति पर बोहोत सारी मालाएं भी दिखाई दे रही हैं।